यहां से गैस दिखाई दे रहा है जाता हुआ।

और इसमें पहाड़ भी दिखाई दे रही है।

ऊपर व्हाइट कलर की लाइट जल रही है बाकी बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है कुछ लोग माला पहने हुए हैं।

सामने कई सारे चार से पांच डॉक्टर बैठे हुए हैं।

यहां कई सारे लोग बैठकर काम कर रहे हैं।

बैग्स लेकर कोई जा रहा है।

ऊपर कई सारी लाइट के बायर दिखाई दे रहे हैं।

यहां कई सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां ब्राउन कलर की बहुत बड़ी-बड़ी कुर्सियां रखी हुई हैं।

ऊपर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ छोटे-छोटे हैं और कुछ बड़े-बड़े हैं।

यह एक सब्जी की शॉप है जिस पर कई सारे टमाटर दिखाई दे रहे हैं कई सारी मिर्चियां दिखाई दे रही हैं और भिंडी दिखाई दे रही हैं।

इसमें बहोत प्यारी लाइट लगी हुई है जो की खंभे में लगी हुई है वाइट कलर की--

इसमें दो लेडी से दिखाई दे रही हैं उसमें से एक की गोद में बच्चा है।

बाकी तीन चार लड़के वर्क आउट कर रहे हैं।

एक लड़का रेड टी-शर्ट पहना हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी फूलों की शॉप है।